एक व्यक्ति व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहने को --

और इसके अंदर ही एक स्विमिंग पूल बनाया गया है जहां की कुछ लोग नहा रहे हैं और स्विमिंग पूल के सामने ही कुछ लोग खड़े हुए --

यह एक म्यूजियम है जिसमें बहुत सारे प्रिंटिंग्स हैं जिससे कि लंगूर की टाइगर्स की--

यह एक पिकनिक स्पॉट्स है और ये काफी खूबसूरत है आप--